इस दृश्य में बड़े सा चट्टानों का चित्र है।

इस पार्क के अंदर छोटे से घर जैसा बना हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा हॉल का चित्र है।

और बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी हैं आसमान भी दिख रहा है और कुछ घर --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

इस मॉल के दीवार में बहुत सारे गोल गोल खिड़की खुला हुआ है।

जिस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस कार को प्लास्टिक से कवर किया हुआ है।

और साइड में अल्बेस्टर का दुकान बना हुआ है।

और रोड में एक आदमी बाइक से जा रहा है।

जिसमें वेलकम टू इस्टर्न मॉल लिखा हुआ है।

और छोटे छोटे घास भी निकले हुए हैं।

और प्याज भी नजर आ रहा है।

इस फ्रिज में आइसक्रीम का पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस नदी के में एक नाव भी लगा हुआ है।

यह कब्रिस्तान ईसाई लोग का है।

इस दृश्य में एक बस स्टैंड का चित्र है।

बोर्ड में डायग्नोसिक एंड इमेजिंग सेंटर लिखा हुआ है।